यहाँ हमें दो बस खड़ी दिखाई दे रही हैं व्हाइट और ब्लू कलर की। इशमें दो शीशे लगे हुए हैं।

यहाँ हमें एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमे एक बड़ा-सा तालाब दिखाई दे रहा है। उसके सामने बोहोत बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है मस्जिद का।

यहाँ हम एक रूम देख सकते हैं। इसके अन्दर एक और रूम दिखाई दे रहा है। दरवाजा दिखाई दे रहा है।

चारों तरफ जाली लगी हुई है और एक नेट लगा हुआ है।

यहाँ हमें ये ट्रिपल केक दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमें एक ड्राइ शॉप दिखाई दे रही है और --

यहाँ हमें ये मंदिर जैसे दिखाई दे रहा है। इसके चारों तरफ --

और शटर लगी हुई है औ --

जहां पर शहनाई जरूरत की सारी चीज़े अवेलेबल है।

और स्टूल्स रखे हुए है बैठने के लिए।

और काफी अच्छा बना हुआ है ब्यूटीफुल सा।

यहाँ हमें जिम दिखाई दे रही है।